जो खड़ी हुई हैं बिल्डिंग्स काफी साफ सुथरी और अच्छी यो बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है रोड भी काफी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

नीचे घर वगैराह बने हुए हैं और आप देख सकते हैं शायद एक पार्क बना हुआ हैं।

तो इस फोटो में हम देख सका हां यो कोई शायद जोड़ की तरह या कोई तालाब बनाए औड है।

बाहर देख सको आप ग्राउंड दिखे है और एक डोरी बंध रही है जिस पे--

वगैरह कर रहा है और अ ये झुका हुआ है और वहां पे--

आप देख सको घनें तार तूर दिखाई दे रहे हैं एक बड़ी मशीन भी दिखे हैं।

दुकान ये चाय की दुकान है और आप देख सको ये कुर्सी वगैरा इन ये एक लेडिस बैठी जिसने साड़ी पहन रखी है।